पीछे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है स्टील के चम्मच के अलावा--

उनके गले में सांप दिखाई दे रहा है उपर घंटी दिखाई दे रही है पंखा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक नर्सिंग होम दिखाई दे रहा है नर्सिंग होम की बिल्डिंग बड़ी है जिस पे बोर्ड लगा है जिसका नाम नवजीवन नर्सिंग होम लिखा हुआ हैं।

यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर में भगवान दिखाई दे रहे है। भगवान की मूर्ति काले कलर की दिखाई दे रही है।

सोफा नीले कलर की गद्दी लगी हुई है उसमे लकड़ी का कलर पोता हुआ है उसमे फूल बने हुए दिखाई दे रहे है निचे टाइल्स दिखाई दे रही है पीछे एक और--

यहाँ पर ये बहोत ही पुरानी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमे एक नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

इसपे एक लड़का बैठा हुवा दिखाई दे रहा है। गाडियों का रंग सफेद तथा काला दिखाई दे रहा है।

सफ़ेद गाड़ी में पीछे काला टायर लगा हुआ दिखाई दे रहा है और पास में एक मोटर साइकिल ख--

एक दुकान में किताबे टंगी भी हुई हैं तथा कुछ समाने रखा हुआ हैं।

स्क्लेटन जिस पर पड़ा हुआ है चादर का रंग नीला है।

एक खिड़की दिखाई दे रही है पीछे चद्दर लगा हुआ दिख--

आगे कुछ और छोटी छोटी मूर्तिया भी रखी हुवी दिखाई दे रही है। पीछे बड़े बड़े पेड़ भी लगे दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक बस दिखाई दे रही है बस में काफी सारी भीड़ चढ़ती हुवी दिखाई दे रही हैं।

बाहर ये गाड़ी खड़ी हुवी दिखाई दे रही है। गाड़ी के पास एक औरत खड़ी हुवी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर ये एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग के उपर एक सफ़ेद रंग का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

सामने की ओर रामजी खड़े हुए दिखाई दे रहे है पीछे पहाड़ की तस्वीर दिखाई दे रही है।

कुछ लोगोने एक जैसे कपडे पहने हुए है बाकि के लोगो ने रंग-बेरंगी कपडे पहने हुए है।

पट्टी बनी हुई है जिस पर बच्चे फिसल रहे है सीसो करने का है जिस पर बच्चे खेल रहे है।

ऊपर कुछ बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहै है मेडक के डिज़ाइन के झूले लगे हुए हैं।

और यहाँ पर सफ़ेद रंग का झरना दिखाई दे रहा है पानी का रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा है आसपास--